ऊपर सीलिंग में पंखा लगा हुआ है सीलिंग जो है सफ़ेद रंग का दिख रहा है इसमें बड़े-बड़े सफ़ेद रंग के पिलर है।

और ट्यूबलाइट भी जल रही है जिसमें सफ़ेद रोशनी दिख रही है सामने बड़े-बड़े कांच के गिलास दिख रहे है।

बड़ा सा एक पहाड़ पीछे है उसकी छवि पानी के अन्दर दिख रही है और ऊपर आसमान दिख रहा है।

बड़ा सा एक खेत दिख रहा है जो दोनों तरफ से हरे रंग का है जबकि बीच का पूरा हिस्सा हल्का लाल रंग का दिख रहा है और पीले जैसा भी लग रहा है ।

बड़े-बड़े झाड़ पीछे लगे हुए है और कोने में पांच झाड़ बड़े-बड़े लम्बे ऊपर की ओर खड़े हुए है आसमान नीला है।

और दो बड़े -बड़े ट्यूब लाइट लगे है छत का रंग ही सफ़ेद है एक तरफ दीवाल पर बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें अब्दुल कलाम जी की फोटो बनी है और दुसरे तरफ नीले रंग की तस्वीर --

सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा मकान दिख रहा है नीचे की फ्रेमिंग हलके लाल रंग की है सामने कुछ हरी झाड़ियाँ और पेड़ दिख रहे है जो हलके नारंगी और हरे रंग के है ।

इसमें सफेद रंग के बहुत सारे सेब दिख रहे है नीचे लाल रंग के बहुत सारे सेब दिख रहे है सफ़ेद रंग वाले सेब में बीच में हल्के हरे भी दिख रहे है।

खेत के अन्दर झोंपड़ी बनी है सामने जमीन कुछ मिट्टी की जैसी दिख रही है थोड़ी सी घास जैसी उगी है।

पीछे एक सफ़ेद कलर का बड़ा-सा मंदिर दिख रहा है और उसके बगल में एक मंदिर के ऊपर सफ़ेद रंग का झंडा दिख रहा है ।

ऊपर एक सीमेंट का बहोत बड़ा पुल दिख रहा है जो सफेद रंग का है उसके दो पिललर सामने की ओर समुद्र में धसे--

कुछ फूल रखे हुए है पीछे दो बड़े खम्बे सामने दो पीछे दिख रहै है ऊपर एक गुम्ब्बद जैसा दिख रहा हैं।

और पीछे लम्बी -लम्बी रॉडे बगल में दिख रही है छत पे कुछ लाइटें जल रही है और गोले चक्र बने हैं।